जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैठा हुआ है टोपी पहना हुआ है और कुर्सी में बैठा हुआ है आराम से आगे में कीपैड है चारो साइड --

पेन उन है कलम है कॉपी है।